एक साइन बोर्ड है जो कि ना नोटिस लगाती है और इधर पे एक क्लासरूम थ्री लिखा है और इधर पे कुछ कुर्सियां भी हैजो की ना इधर बैठकर पढ़ाई करती है।

और इधर एक जल पानी का बहुत बड़ा एक है।

रास्ता है जहां पे दिखाई दे रहे हैं एक बस है और एक कार है जहां जो इधर दिखाई दे रही है । इधर बहोत सारा पेड़ है और लाइट की--

और यहाँ पे दो कुर्सी है और इधर बेस बास सजा सूजा के रखा हुआ है।

जो की इधर की रखा हुआ है और यहाँ पर एक इन्सान जो की जोल दे रही है और इधर एक इन्सान काम कर रहा है।

और यहाँ पर छोटा-छोटा घर है जो की देख रहा है | इधर पे पेड़ है जो बहुत सारा पेड़ है और इधर लाइट भी है |